गंगा नदी में बहुत सारे नाव लगे हुए हैंनदी के किनारे पर और एक सामने भी बड़ा सा पुल दिख रहा है|

यह गोदवलिया चौराहा है गोदवलिया चौराहा पे भारी-भरकम भीड़ देखने को मिल रही हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहीं से गंगा का दर्शन के लिए जाते हैं ।

यह एक बड़ा सा मंदिर है।

और टी-शर्ट्स लगे हुए हैं बैग्स हैं इत्यादि --